सफ़ेद दोनों ही कार इस सड़क पर खड़ी हुई है और आसपास कोई भी लोग नहीं दिखाई दे रहे। दूर पर एक सफेद कार देखा जा रहा --

जिसका रंग है निल और अ ब्लू उसके साइड में एक लड़का भी देखा जा रहा है उसके ऊपर घड़ी भी देखा जा रहा है।

अ- उसमें दो चेयर के रंग जो है वो है पीला। फुटेज में एसी भी देखा जा रहा बहुत खूबसूरत टाइप सा लाइट भी जल रहा है होटल में --

और होटल में दो तीन चेयर भी देखा जा रहा है और वो चेयर जो है ना उसका रंग है काला और दूर में एक आदमी का फ़ोटो टँगावा हुआ है दीवाल --